इस इमेज में मुझे एक ऑटो --

हैं जिसमें एस_बी_आई की बैंक भी दिख--

मुझे एक बहोत ही सुंदर सा--

इस इमेज में मुझे एक गेट दिख रहा है।

एकत्रित हुए उन्हें देखने के लिए--

फैमिली रेस्टोरेंट दिख रहा है।